यहां पर रोड टूटी हुई है पानी हरे रंग का है।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

अंदर बहुत से झूले लगे हुए हैं जालीदार कमरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक सिंक है पास में बॉटल रखी है सामने शीशा लगा हुआ है।

यहां पर जीने बने हुए हैं यहां पर एक स्कूटी है खड़ी--